यहाँ हमे बहुत ही सुंदर एक हरा-भरा जो है पार्क दिखाई दे रहा है जो कि बहुत बड़ा है। पार्क के चारों तरफ बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे गए --

में एक बहुत बड़ा स्टेज दिखाइ दे रहा है यह बहुत ही ब्युटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है।

यहाँ हमे एक बहुत सुंदर सी झांकी दिखाई दे रही है झांकी को बहुत ही अच्छे से फूलों से सजाया गया है।

यहाँ हमें एक बहोत बड़ी जो है बिल्डिंग दिखाई दे रही है घर कि तरह जोकि सफेद कलर से पेंट है इसके नीचे काफी सारी हमें दुकाने दिखाई दे रही हैं| बिल्डिंग के ऊपर जो बोर्ड है वह ब्लैक कलर का लग रहा है।

जस्ट सामने हमें एक जो है पानी दिखाई दे रहा है स्विमिंग पुल की तरह। एक चेयर है और दूर हमें ग्रीन कलर के कैक्टस जैसा कुछ डिजाइन बना दिख रहा है ऑक्टोपस --

यहाँ हमें सामने जो है एक बब्बर शेर दिखाई दे रहे हैं। शेर के पीछे हमें जो है कुछ रेलिंग्स दिखाई दे रही है। काफी बड़े-बड़े पोल्स भी हैं। उनके जस्ट --

यहाँ हमें एक बहुत बड़ा जो है रूम दिखाई दे रहा है । इस रूम के ऊपर कि दिवाल व्हाइट कलर से पेंट है जिसमें काफी सारे लाइट्स लगे हैं।

यहां हमें एक बहुत बड़ा सा जो है पार्क दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें बहुत बड़ा सा जो है लाइटिंग किया हुआ डेकोरेशन का एक जो है टेंट या जो डेकोरेशन दिखाई दे रहा है जोकि बहुत बिल्डिंग को कि --

यह बोहोत ऊँचाई से बह रहा है आस-पास बड़ी-बड़ी चट्टान दिख रही है कुछ हरे भरे पेड़ पौधें हैं। झरने के सामने जस्ट हमे एक लेडी खड़ी दिखाई दे रही है।

जस्ट दीवाल पर हमें बहुत बड़ी जो पोस्टर या मूर्ति दिखाई दे रही है और सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं ।